जो रंग बिरंगी दिख रही हैं।

यहाँ पे बहोत सारे झूले भी हैं।

इस बस का रंग लाल और सफेद है।

टटो के पड़ोस में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो पीले रंग की है।

इसका गेट लोहे का बना हुआ है उसके अंदर एक कुआँ है।

इस यहाँ इ -इसके बाहर बोहोत सारी मरकरी लगी हुई हैं।

यहाँ यहाँ पे एक दो लाल रंग की रखी --

यहाँ पे एक बोल्ड दिख रहा है। यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है।